मकान ही दिखाई दे रयो है एक आदमी चेंज करतो जा रहो है।

इसमें हमें एक सुर दिखाय दे रही है मूर्तियो --

रोड दिख मे क्या कु और और इनमे--